बहोत काला हो गया हैं और बहोत ख़राब हो गया हैं दीवार सब बस सिर्फ दीवार ही दिख रहा हैं।

ये कोई फलो फलो के दुकान के जैसा लग रहा है जहाँ पर बहुत सारे फल बिक रहे है और--

सब कोई ऑटो सब लाइन लाइन से खड़ा किया हुआ है और पीछे में ऑटो के पीछे पोस्टर लगा हुआ है पंछी का पोस्टर है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।